मैम के हाथ में लैपटॉप है।

यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

पार्क में जाली लगी हुई है जाली के ऊपर बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं।

यहां पे यीशु मसीह की एक मूर्ति बनी हुई है।

यहां पे बहुत से रंग की बाल्टियां भी रखी हुई हैं।

लाल रंग की बाल्टी पीले रंग की बाल्टी ब्लू रंग की बाल्टी भी रखी हुई है।

बगल में चावल की बोरी भी रखी हुई है।

उसने लाल रंग की चप्पल भी पहनी हुई है।

मजदूर अपने काम को कर रहे हैं मजदूर छड़ की ढलाई कर रहे हैं।

उसके सामने बहुत सारे छड़ ऊपर में बंधा रहा है।

आदमियों ने पीला कलर का हेलमेट भी पहना हुआ है।

इसके बगल में बहुत सारी पेप्सी है सब की बोतलें रखी हुई है।

सामने एक लैपटॉप पड़ी हुई है।

उसके बगल में बहुत सारे डिब्बी रखी हुई है।

यह एक बाजार का दृश्य है जहां पे बहोत सारे आदमी जा रहे हैं।

एक नाई की दुकान की दृश्य है।

उसके बगल में दो गेट लगे हुए हैं उसके बगल में एक वोल्टास कंपनी का ऐ_सी का एग्जास्ट फैन लगा हुआ है।

यहां पे पुस्तकालय के ऊपर राज्य पुस्तकालय रांची लिखी हुई है।

यह एक मंदिर का दृश्य लग रहा है जहां यह खजूर का पेड़ लगा हुआ है।

उसके नीचे एक हाथी है हाथी को सब आदमी नहा रहे हैं।

यह एक खूबसूरत सा मस्जिद का दृश्य है जहां पे बहुत सारे कालीन बिछे हुए हैं।

हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए खड़ा है।

उसके बगल में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक रखे हुए हैं।

यह एक हिल एरिया का दृश्य लगता है जहां पर टैगोर हिल पार्क रांची लिखी हुई है।

उसके पीछे बहुत सारे बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक मस्जिद का दृश्य लग रहा है जहां पे बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।